यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जो काफी सुंदर लग रहे है पर काफी सारे पेड़ो में काफी सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये दूर-दूर तक फेले हुए है यहाँ पर --

येलो कलर के पत्ते दिखाई दे रहे है कुछ ग्रीन कलर के पत्ते दिखाई दे रहे है उनकी जड़े रेड कलर की दिखाई दे रही हैं।

कुछ शैम्पू टँगे हुए हैं बहुत सारे मैगी के पैकेट टँगे हुए हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर का जग दिखाई दे रहा है।

खेत के बीच मे से एक रास्ता जा रहा है | बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं | यहाँ पर एक पेड़ की जड़ दिखाई दे रही है | रास्ते के सामने एक ऑरेंज कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ।

मिठाइयों की ट्रे के नीचे कुछ अखबार बिछे हुए दिखाई दे रहे है नीचे की रैक में कुछ नमकीन रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसका कलर पिच और ब्लू है जिसमें ब्लू कलर की खिड़कियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है ब्लू कलर के गेट लगे दिखाई दे रहें हैं यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहें हैं ये जगह काफी बड़ी है।

एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस में एक लैपटॉप रखा हुआ है जिसको एक आदमी चलाता हुआ दिख रहा है सामने एक आदमी बैठा हुआ है।

कपड़ों की दुकान है जहाँ पर बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे है कुछ डमी खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहां पर कुछ छोटे-छोटे बच्चों के भी कपड़े दिखाई दे रहे है काफी सुंदर लग रहे हैं।

बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में काफी सारी रस्सियाँ बंधी हुई हैं।

एक लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत सारी किताबे रखी हुई दिखाई दे रही हैं जो काफी सुंदर लग रही है ये लाइब्रेरी वाइट कलर की है यह पर एक बडा सा टेबल दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ कंप्यूटर रखे हुए हैं।

ब्लू कलर का टीन दिखाई तीन शर्ट दिखाई दे रहा है उसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहां पर एक व्हाइट कलर की इनोवा दिखाई दे रही है। यहां पर एक ग्रीन कलर की--

यहा पर एक ब्राउन कलर की दीवार दिखाई दे रही है दीवार के आगे एक मछली भी बनी हुई है जो काफी सुंदर लग रही है एक और चीज बनी हुई दिखाई दे रही है जो काफी खूबसूरत लग रही है यहा पर छोटी छोटी--

यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे काफी सारे ऑटो --

गेट पर एक येलो कलर के आदमी का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक पंखा दिखाई दे रहा है छत मे व्हाइट कलर की लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है यहां पर कुछ कपड़े के थान भी रखे हुए है।